आदमी भी बैठे हुए हैं यहां पर बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

बहुत सारे रंगों में है यहां पर एक टेबल भी है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर बहुत सारे आदमी भी हैं।

यहां प बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर एक ए_सी भी है।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है।

यहां पर एक कुर्सी भी है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पर बहुत सारे मार्बल बिक रहे हैं।

यहां पर एक आदमी भी है।

यहां पर फल का दुकान है।

के ऊपर झोपड़ी ऐसा बनाया गया है।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

कोई बाल्टी में है और कोई गमला में।

यहां पर एक वाइट कलर का मुर्गी है।

यहां पर डांस कर रहे हैं।

यहां पर टी_वी भी है यहां बहुत सारे कपड़े भी हैं।

यहां पे एक बहुत सारे पंखा भी हैं।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है।

इसमें ब्लैक कलर का पेंट लगाया गया है स्कूल का रंग पीला कलर का है।

यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

लेमिनेशन भी किया जाता है।

यहां पर पानी के बॉटल भी है और यहां पर समोसा भी बिक रहे है।

यहां एक बहुत बड़ा दरवाजा है।

यहां पर लाइट भी लगे हुए हैं।

एक गाड़ी का लाइट जल रहा है।